बाहर इसमें भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है।

में एक पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर एक आदमी साइकल लेके खड़ा है।

पार्क के बाहर की ओर कुछ घर बने हुए हैं।

बाहर की ओर एक रेड ब्लैक कलर की बाइक खड़ी हुई है।

और एक लेडि ने व्हाइट साड़ी पहनी हुई है।

की चोच नीचे की ओर है और एक की चोच ऊपर की ओर है।

और अ ऊपर दीवाल में लाइटे लगी हुई हैं दो तीन और नीचे टाइल्स व्हाइट कलर की लगी हुई है।

इसमें ग्रीन और येलो में मौसम्मी दिख रहे हैं।

अलग कलर के कपड़े पहने हुए--

सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है।